एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग में काफी सारी खिड़कियाँ दिखाई दे रही है बिल्डिंग का कलर काला दिखाई दे --

एक प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है प्रवेश द्वार पर महावीर मंदिर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एक बिजली का खम्भा गड़ा हुआ दिखाई दे रहा है मंदिर के बहार कुछ --

बहुत सी चिड़िया दिखाई दे रही हैं।

साइड में मैदान टाइप का --

पंखा भी लगा हुआ है भी दिखाई दे रहा है।

एक मकान दिखाई दे रहा है मकान में पिंक कलर का पेंट हो रहा है और हरे कलर का भी --

ये एक लेक की पत्तियाँ भी दिखाई दे रही है और ये छत वगैरा दिखाई दे रहा है बादल भी दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है जा रही है छत के ऊपर दिखाई दे रहा है बादल भी दिखाई दे रहा है सफेद-सफेद सा --